और ऊपर में लाइट लगाया गया है।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

और ऊपर में बादल भी दिखाई दे रहा है।

सामने पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

जो कि अलग अलग ड्रेस पहने हुए हैं।

झाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं।

जो कि अलग अलग ड्रेस पहने हुए हैं।

और टेबल भी दिखाई दे रहा--

और सामने लोहे का गेट दिखाई दे रहा है।

यह एक डैम है डैम में नाव दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा लोग भी दिखाई दे रहे हैं।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

और लोहे का सीढ़ी बनाया हुआ है।

यह एक दुकान है दुकान को पेंट किया गया है।

और मुंह फ़ड़वाया गया है।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

और ऊपर में पोस्टर लगाया हुआ है।

ऊपर में बादल भी दिखाई दे रहा है।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

और एक आदमीन खड़ा है जोकि कुर्सी पर हाथ रखा हुआ है।

और सामने बहुत सारा फोटो दिखाई दे रहा है।

सामने बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और अगल बगल बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहा है।